यहाँ पर एक छोटा सा मैरिज गार्डन है इस मैरिज गार्डन के आगे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। इस मैरिज गार्डन को --

यहाँ पर एक जंगल है इस जंगल पर बहुत सारी घास फुस जमी हुई है | इस जंगल पर बहुत बड़े-बड़े पेड़ लगी हुए हैं |

चढ़ कर इस तरफ से उस तरफ जा सकती हैं।

टूल्स और मशीन रखी हुई है ताकि यहाँ पर लोग आकर जिम कर सकें।

गेट बनाया गया है और इस गेट के अंदर ऑफिस है इस स्कूल का।

और इस जिम में बहोत सारे डंबल और मशीन रखी हुए हैं ताकि यहाँ पर लोग आए और एक्सरसाइज करे और एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रख सके।

दो मंजिल की बिल्डिंग है और दूसरे मंजिल पर भी बहुत सारी अ गाड़ी रखी हुई है और सामने रोड जाती हुई दिखाई दे रही है | इस रोड पर दो गाड़िया खड़ी है |

और इधर बहोत सारी बाल्कनी दिख रहीं हैं इस बिल्डिंग पर निचे कुछ लोग आये हुए हैं।

एक्सरसाइज करने से शरीर फिट रहता है।

यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया ऑफिस बनाया गया | इस ऑफिस पर दो येलो कलर और एक ब्लू कलर की टेबल है | इस टेबल के ऊपर एक --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा शोरूम है इस शोरूम पर लेडिज के काफी सारे कपड़े रखे गए है बेचने के लिए ।

ये बिल्डिंग ऐसा लग रहा है जैसा की बहोत ही बड़ा अपार्टमेंट की बिल्डिंग है और इधर कुछ लोग रहते हैं।

इस रोड पर एक राइट साइड पर पेड़ लगा हुआ है | इस पेड़ के पत्ते निचे रोड पर पड़े हुए हैं |

मम इस बुक हाउस के सामने ही बहुत साड़ी गाड़िया खड़ी की गई हैं और कुछ लोग आये हुए हैं जो की बुक खरीदते हुए दिखाई दे रहें।

इधर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और इधर --

यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब है | इस तालाब पर स्नान कर के दो पण्डित अपना पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं | बहुत सारे लोग आये हुए हैं इस तालाब के किनारे |

इस रोड पर बहोत सारे वाहन आते-जाते दिखाई दे रहे हैं और इस रोड के ऊपर एक ब्रिज बनाया गया है।

रख कर दूसरी जगह ले जाया जाता है सामने भी कुछ लोग दिखाई दे रहे है इस रूट पर।

पेंटिंग बना कर लाए हैं और इस स्कूल पर बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं।